उजीला दिखाई दे रहा है थोड़ा-थोड़ा एक दो कुर्सियाँ दिखाई दे रही है सफेद कलर का आसमानी कलर का पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे कुछ बॉटलें दिखाई दे --

कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बनाते दिखाई दे। वो गुलाल कलर के --

पक्षी दिखाई दे रहे हैं टीचर दिखाई दे रहे पेड़ दिखाई दे रहा बाहर जंगला दिखाई दे रहा हैं। उजला दिखाई दे रहा नीला गुलाबी सब कलर पुता हुआ हैं। बेंच दिखाई दे रहे।

मस्जिद दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है। सफेद कलर पूता हुआ है। गुलाबी पूता दिखाई दे रहा पीला दिखाई दे रहा है।

छोटी सी और कच्ची रास्ता दिखाई दे रही हैं। पीले कलर की दिखाई दे रही है। वडा- काला कलर का गेट --

गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तार दिखाई दे रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फर्श दिखाई दे रहा हैं। उजेला दिखाई दे रहा हैं। अंधेरा दिखाई दे रहा है।